एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहा एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है | एक व्यक्ति साइड में सीढ़ियों में खड़ा हुआ है | बाहर में मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है |

यहाँ सामने में कुछ दो मकान बिल्डिंग डबल स्टोरी बनती हुई दिखाई दे रही है और सामने रोड में कुछ दो तीने सफ़ेद मालगाड़ी पिकअप खड़ी हुई है।

और गेट के पास में ऊपर में कुछ बोर्ड लगा हुआ है राइट साइड में लोहे के गेट हा खुले हुए दिख रहे हैं।

आते हुए दिख रहा है एक व्यक्ति साइड में खड़ा हुआ है और धूप निकली हुई है यह दिन का समय है और साइड मे कुछ हरे-हरे वृक्ष भी दिख रहे है।